यहां मे छत टीना से बनाया है यहां मे तीन ठो पौधा भी लगाया हैं हमको एक सीढ़ी भी दिखाई दे रहा --

हमको यहां पे फोटो में दो ठो टेंट दिखाई दे रहा है।

कुछ दूर में पहाड़ दिखाई दे रहा है हमको आसमान सफेद दिखाई दे रहा है।

में हेल्थ केयर हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

हमको यहां में बहुत सारा फैमिली दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में एक ठो लैडर भी दिखाई दे रहे है हमको यह फोटो में एक लाइट बल्ब जवल के दिखाई दे रहा है।

यहां में हम लोग को बहोत सारा बैलून लोग भी दिखाई दे रहा है स्टेज में ब्लू कार्टन लगाके हैं।

हमको ये फोटो में एक ठो कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में दो आदमी दिखाई दे रहा है।

हमको ये फोटो में एक दुकान दिखाई दे रहा है रैक में बहोत सारा सामान रखा है।

हमें दीवार का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है।

यह जमीन में बहुत छोटा छोटा जंगल लोग भी दिखाई दे रहा है हमको यहां में एक नदी भी दिखाई दे रहा है।

आसमान हमको नीला दिखाई दे रहा है।

हमको ये फोटो मे एस_बी_आई दिखाई दे रहा है हमको यहां बहुत सारा आदमी लोग भी दिखाई दे रहा है।

ये बिल्डिंग का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है।

यहाँ में बहुत सारा पिल्लर लोग लगाके हैं साइड में एक टीना का रूफ दिखाई दे रहा है।

हमको ये फोटो में तीन ठो घर दिखाई दे रहा ये घर लोग का कलर सफेद है।

लटका हुआ और लाल फूल भी दिखाई दे रहा--

में एक ठो फैन भी दिखाई दे रहा है।

हमको आगे एक पत्थर का दीवार भी दिखाई दे रहा है हमको आगे बहोत सारा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां पे एक प्लास्टिक भी दिखाई दे रहा है हमको यहां पे एक डिक्सी भी दिखाई दे रहा है।

ये आदमी लोग का फेस को ब्लर किया गया है।

ये फोटो में बहुत सारा मर्चा भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में एक थो फूल पॉट भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में पेर भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां में दो ठो बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग का कलर सफेद है।

इस फोटो में हमें एक आदमी भी दिखाई दे रहा है हमको यहां में एक साइकिल भी दिखाई दे रहा है ये साइकिल में बहुत सारा फ्रूट है।

हमको यहां में एक ठो लड़का का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।